और पीछे की तरफ से फ्लावेर से ही बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया है बीच मे एक कुर्सी रखी हुई है जिसमे की हम बैठ सकते है और नीचे की तरफ से एक लड़का नज़र आ रहा है।

पानी मे और कुछ गाड़ियां वगेरा भी दिखाई दे रही है हमे स्कूटी दिखाई दे रही है जो कि पानी से धो रहे है और नहा भी रहे है यहा पे तालाब पर।

छोटी गाड़ियां है जिसमे लोग बैठे हुए है और मेले में झूले भी लगे है यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैऔर मेला है जोकि लाइट भी जल रही है बहुत बहुत पंखे --

कुछ लड़के बैठे हुए है कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है और प्लाई वगेरा भी खड़े है।

और हम देखेंगे पहाड़ है पत्थर है बड़े बड़े उसके बिच में वो खड़ा है शूज पहेने हुए है और फोटो खिचवा रहा है शयद व--

कुछ लड़के बैठे हुए है और शायद कोई पिकनिक मनाने आए है पत्थर का पहाड़ है कुछ जहा पे वो बैठे हुए है ऊपर की तरफ से हमे पेड़ नज़र आ रहा है उसकी पत्तियां दिखाई दे रही हैं।

हम देख रहे है की यहाँ पे कोई सेलून है सेलून वगेरा है जहाँ पे एक लेडिज बैठी हुई है।